लोहै का ब्रिज है सामने की तरफ इसमें लोहै का ब्रिज बना है जिसमें जाने का रास्ता है इसमें पीछे की तरफ एक मकान नजर आ रहा है सामने एक ब्नोर्ड लगा है।

एक च एक फुलकी का ठेला लगा हुआ है पीछे की तरफ एक घर बना हुआ है जहा पर एक बोर्ड बन लगा हुआ है।

एक ब्रिज है इसमें सामने कि तरफ एक ब्रिज बना हुआ है जो लोहे का है।

सीमेन्ट की वॉल बनी हुई हैंजिसमे प्राचीन पाखंड पांडव गुफा ओम श्री गुप्तदेव गुप्तेश्वर महादेव लिखा हुआ है।

सामने की तरफ पहाड़ है जिसमें बड़े-बड़े पेड़ कुछ छोटे पेड़ पोधे लगे हुए हैं।

जिसमे प्राचीन पांडव गुफा ओम श्री गुप्तेश्वर महाराज लिखा हुआ है उसके चारो तरफ पेड़-पोधे लगे हुए हैं।

इसमें विन्डो भी लगी हुई है इसमें इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड भी लगे हुए हैं इसमें द्रोस भी बनी हुई हैं।

सामने की तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग कुछ घर नज़र आ रहें हैं जिस में बहोत सारे गेट लगे हुए हैं सामने की तरफ पेड़-पोधे लगे हुए हैं।

एक नदी है सामने की तरफ एक नदी नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे स्टोन और पानी पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ इसमें केबल ब्रिज नजर आ रहा है जिसपर लोफुन खड़े हुए है।